यहाँ पे डीवाइडर भी है जो पीले और काले रंग में है।

यहाँ पर एसबीआई एटीएम लिखा हुआ है और अंदर एटीएम मशीन भी है।

ये मुझे एक हॉल दिख रहा है। यहाँ पे एक कैंटीन है जिसका शीशे का काउंटर है।

सामने मुझे दो लड़के दिख रहे है जोकि ईंटों के बीच में हैं।

सामने मुझे कुछ फल दिख रहे हे। जो के केरेट के ऊपर रखे हुए हे।

और यहाँ पे पेड़ भी लगे हुए हैं।

और इसको एक आदमी ने पकड़ा हुआ है।

सामने मुझे एक दुकान दिख रही है जिस पर पेटीज कॉर्नर लिखा हुआ है।